तब ये पाइप लागल छै एता देखी खिड़की छै कुलर ए.सी. के साथ में छै भाए।

ता बस स्टैंड जे बस सब लागल छे और टंकी उनकी लागल छे आ घास पूरा हरा भरा दिखरल छे।

बेचे छै निमू छै तरबूज छै त आदमी खड़ा छै ठेला छै औरो एगो --

त बिजली क तार छै खम्बा छै एगो --

एता घर के सेब संतोला सब चढ़ेएला छै।

एकटा पहाड़ छै आदमी सब छै पानी पिए छै पानी छै साइड में।

एता घर छै पूरा बिल्डिंग छै चारो साइड से सुर्ज उगल छै एता घर छै।

इ झकास ब्यूटीफुल छै ट्रेन स्टेशन ट्रेन आब एते।